मुझे इस पिक्चर में एक बैंक दिखाई दे रहा है जहां पर कई तरह की बाइकें और कई कारें खड़ी हैं।

हैं और ये बहुत ही बड़ा है यहां पर चारों ओर बाउंड्री है एक सुंदर सा गेट भी है बड़ा।

बहोत ही अच्छा शानदार नजारा दिखाई दे रहा है और इस बिल्डिंग में स्काई ब्लू और व्हाइट कलर का कलर किया हुआ है।

इस पिक्चर में एक रेस्टोरेंट दिख रहा हैं जिसका नाम सोनू रेस्टोरोन हैं।

एक दम सारा शहर ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है कुछ लोग--

इस पिक्चर में बहुत ही बड़ी नदी दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारा--

और बहुत ही सुंदर बादल दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में कोई म्यूजिक क्लास दिख रही है जहां पर कुछ लोग ढोलक तो कुछ--

और आसपास भी घना जंगल दिख रहा है।

इस पिक्चर में बहोत ही सुंदर होटल है जहां पर कई सारे रूम बने हुए हैं बहोत ही सुंदर--

इस पिक्चर में एक बहोत बड़ा पिंजरा है उस पिंजरे के अंदर दो--

इस पिक्चर में एक बाइक की शॉप है जहां पर कई सारी बाइके हैं।

इस पिक्चर में एक मंदिर हैं जो बहोत बड़ा हैं।

जिसमें कई सारे खंभे लगे हुए हैं उन खम्बो में कलर चॉकलेटी कलर है कई सारे लोग इधर-उधर जा रहे हैं।

ये क्रीम कलर किया हुआ है यहाँ कोई परिधान का बोर्ड लगा हुआ है और ग्रीन चद्दर लगे हुए हैं बहुत ही शानदार सूरज --

बड़ा जिम बना हुआ है जिसमें व्हाइट कलर किया हुआ है।

इस पिक्चर में एक बहोत ही शानदार--

कुर्सियां लगी हुई हैं और काफी सारा खाना है।

इस पिक्चर में मुझे बहोत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है बहोत ही बड़ी हवेली है हवेली के आस --

इस पिक्चर में एक मुझे मॉल नजर आ रहा है जहां पर कई प्रकार के जेंट्स लोगों के--

कपड़े हैं और बहुत ही शानदार मॉल दिख रहा है।

जंगल के बीचो बीच एक तालाब है तालाब के आसपास कई तरह के पेड़ पौधे--

हेयरकट सैलून जहां पर एक मेंबर उम्--

दूसरे मेंबर की कटिंग कर रहा है।

जहां एक घना जंगल है बहुत ही बड़ा और यहां पर जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं।